कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और इसके अंदर मुझे लाइटें दिखाई दे रही है एक गेट दिखाई दे रहा है एक स्विच बोर्ड दिखाई दे रहा है।

और कुछ किताबें दिखाई दे रही है मुझे ये कोई लाइब्रेरी लग रही है सामने कुछ लाइटें दिखाई दे रही है।

सामने मुझे कुछ पत्रों की बनी दीवार दिखाई दे रही है और मंदिर जैसा दिखाई दे रहा है कुछ बड़े पिंपल --

पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

एक बैग दिखाई दे रहा है जिसके अंदर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है और दरवाजा है वह शीशे से बना हुआ है।

कुछ स्पीकर दिखाई दे रहे हैं और कुछ लाइटें दिखाई दे रही है इलेक्ट्रॉनिक दुकान लग रही है मुझे ये पास में दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे एक मकान दिखाई दे रहा है जिसके अंदर एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है।

और एक लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है पास में कुछ लोहे के पाइप दिखाई दे रहे है एक डस्टबिन दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक महल जैसा दिखाई दे रहा है जिसके बाहर की साइड मुझे एक --

सोफा दिखाई दे रहे जिसपे एक दूल्हा और दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं और कुछ पास में व्यक्ति और भी दिखाई दे रहे हैं।

कोई कंप्यूटर का काम कर रहे हैं और कीबोर्ड चला रहे हैं।

जिसका दरवाजा है वो लोह का बना हुआ है एक ऊपर पोस्टर लगाया हुआ है इसमें कुछ नाम भी दिखाई दे रहे हैं।

इस खुले हुए कुछ नाम दिखाई दे रहा है राज की महारानी इस तरह का नाम दिखाई दे रहा है इसके पास एक लोहे का पोल दिखाई दे रहा है।

केलों के पेड़ दिखाई दे रहे हैं और कुछ मालायें दिखाई दे रही है और कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

एक पास में मुझे शीशा लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसपे एक मूर्ति दिखाई दे रही है एक एल_सी_डी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ बच्चे ग्राउंड के अंदर खेलते हुए दिखाई दे रे हैं इसके आसपास में कुछ मिट्टी दिखाई दे री है जो बालू मिट्टी है।

और सामने मुझे कुछ गुसा दिखाई दे रहा है लकड़ों पे लगा हुआ और पास में मुझे कुछ घने पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

दूर पे कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं।